और एक लेडिज का पोस्टर नजर आ रहा है जो सामने गेंदा फूल से सजाया नजर आ रहा है और बहोत सारे लोग खड़े हैं।

टीचर नजर नहीं आ रहे हैं पर स्टूडेंट सब बहुत सारे हैं और एक फैन लगा हुआ है एक बोतल है।

और दो बाइक आगे लगा हुआ है और यहां पे एक ग्रिल है दीवाल है ब्लैक कलर --

जो की बहोत ही स्टाइल में खड़े हैं।

बहोत सारा बाइक लगा हुआ है पीछे इटा है टट्टी का--

यहां पे एक सुंदर सा मंदिर नजर आ रहा है जिसमें की साईं बाबा का--

और एक व्यक्ति एक बच्चा लिए हुए हैं।

पंडाल सजा हुआ है गेट बना हुआ है ऊपर में बहुत अच्छा आसमान का नज़ारा है पीछे बहुत सारा बिल्डिंग है।